इस इमेज में बहोत बड़ा मॉल लगा हुआ दिखाई दे रहा है इस इमेज में बहोत सारी दुकानें लगी हुई दिखाई दे रही --

इस इमेज में बहोत पोस्टर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं इस इमेज में बहोत सारा सामान दिखाई दे रहा है इस इमेज में साईकिल खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

ईमेज में एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में बहोत सारी सीड़िया लगी हुई दिखाई दे रही है इस इमेज में बहुत सारी कुर्सी लगी हुई दिखाई दे रही इस इमेज में बहोत बल्लप लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इमेज में बहोत सारे गमले रखे हुए भी दिखाई दे रहें हैं इस इमेज में पोस्टर लगा हुआ भी दिखाई दे रहा है।

इमेज में बहोत सारी जमीन दिखाई दे रही है इस इमेज में एक आदमी खड़ा दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में बहोत सारे पेड़े है लगे हुए दिखाई दे रहे है इस इमेज में बहुत बड़ा पहार दिखाई दे रहा है इस इमेज में बहुत बड़ा ब लीला लीला बादल दिखाई दे रहा है।